अब्दुल कलाम का फोटो भी लगा है और एक क्रिकेट का भी फोटो लगा हुआ है। कुछ बेंच है जिस पर कुछ सामान रखा हुआ है और ये देखने में वाइट कलर से पेंट है और देखने में बहोत सुंदर --

यहाँ लगा रहा है कि भीड़ लगा हुआ हैं। यहाँ सब ल्येक्न लग रहा है परीक्षा किसी चीज़ की दे रहे हैं और कोई बाइक पर बैठा हुआ है और अगल-बगल एक पेड़ पोधा भी है और दो तीन लड़की खड़ा हैं।